दो डॉक्टर हैं जो कि कुत्ते के इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में एक बहोत बड़ा सा बगीचा नजर आ रहा है।

जिसमें बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जिसके नीचे बहुत सा पानी भरा हुआ है।

बाहर की ओर एक सफेद रंग का बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है स्पीड पोस्ट ।

बहोत सी मिट्टी खुदी हुई पड़ी है और कुछ गड्ढे बने हुए नजर आ रहे हैं।

जो कि सफेद रंग की है मस्जिद में काले रंग का गेट लगा हुआ है।

यहां पर बिल्कुल सन्नाटा है कोई भी नजर नहीं आ रहा है।

और ऊपर की ओर टीन की छत बनी हुई है।

जिस पे सफेद रंग से लिखा हुआ है स्नैक बार ।

जिस पर कॉफ़ी की मशीन रखी हुई है और कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

पिक्चर में एक पार्क बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक बैंक बना हुआ दिखाई दे रहा है।

एक इमारत नजर आ रही है जोकि सफेद रंग की है।

पिक्चर में एक लाल और सफेद रंग की दुकान बनी हुई नजर आ रही है।

जिसके ऊपर सफेद रंग से सुधा पार्लोवर लिखा हुआ है।